यहाँ पढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सबके आगे एक टेबुल भी रखे हुए हैं जिसपे वे लोग कुछ कुकिंग कर रखे हुए हैं जिसपे वो लोग कुछ बनाते हुए नजर आ --

यहां पर पर कुछ आगे एक बोर्ड लगा हुआ है जिस पर एक टीचर पढ़ाते हुए नज़र आ रहे हैं इसके सामने कुर्सी लगी हुई हैं टेबलें लगी हुई हैं जिस पर कुछ बच्चे बैठे हुए नज़र आ रहे हैं जो पड़ते हुए नज़र आ रहे हैं।